इसलिए हमें साइकिल को --

और इसमें माँ दुर्गा के स्वरूपों को --

लगता है कि किसी बुग्याल में --

सामने चित्र में हमें उत्तराखंड राज्य के --

कुछ मछलियाँ दिख रही हैं।

को करने के लिए लोगों को --

कपड़े मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है।

महत्वपूर्ण संस्थान है जहाँ से हम माउंटेनिंग का कोर्स करते हैं।

यह पहाड़ एक वी शेप में कटा हुआ है।